जिसमें एक बंद पड़ी हुई है।

जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं।

रंग-बिरंगे डिजाइन के और ये यहाँ पे दुकानदार जो है माला को बेच रहे हैं |

और कुछ पटरा लगे हुए हैं।

और सनकिंग के बोर्ड लगाया गया है।

नीचे एक हरे रंग की कार्पेट नजर आ रही है।

जिसमें अलग-अलग बॉडी फिटनेस को बनाने के लिए बॉडी को फिटनेश यानि फिट रखने के लिए जो है तरह तरह का --

पंडाल का मजा लेने के लिए --

जिसमें एक केरन नजर आ रहा है।

पानी बहुत साफ है नजर आ रहा है।

गाड़ियाँ दिख रहे हैं जो हरे-हरे पत्तियों से बनी --